यहां पर बहुत अच्छा अच्छा बैग --

यहां पे मेला लगा हुआ है यहां में बहुत सारा खिलौना आया हुआ है।

च्यवनप्राश और सब दवा जितना है सब दवा दिख रहा है।

ब्रोकरी का यहां पे आटा चावल दाल तेल मसाला सब दिख रहा है सारा डब्बा दूर--

दिख रहा है पेड़ पौधे नजर आ रहा--

उसपे कटोरा रखा हुआ है दिख रहा है चम्मच लगा हुआ है।

पंखा दिख रहा है पर्दा लगा हुआ --

बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है।

फूल से सजा हुआ है लाइट बत्ती बहुत खूबसूरत खूबसूरत जल रहे --

कुछ लोग चेहरा छुपा के बैठे हैं।

लाल कलर का लिखा हुआ हैं उजला सवेरा होटल ।

मेन गेट में एक औरत भी दिख रही है कार खड़ी है।

वहाँ पे स्कूल दिख रहा है।

फुल का माला लगा हुआ है।

और दुकानें दिख रहे है शीशा के।

यहां पे मंदिर बना हुआ है उसमें तीन मूर्ति रखे हुए हैं।

यहां पे एक आदमी कार बना रहा है।